और यहाँ पर हमे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पर नीचे सुखी पड़ी हुई कुछ मिट्टिया दिखाई दे रही है और कुछ झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें एक फैशन हाउस दिखाई दे रहा है जहां पर हमे काफी सारे जहां पर हमे एक शॉप दिखाई दे रही है शॉप --

यहाँ पर हमे एक सैलून दिखाई दे रहा है जहां पर हमे एक चेयर दिखाई दे रही है चेयर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसमे--

लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ के कुछ बच्चे हैं जिनके--

एक बड़ा सा बना हुआ ब्रिज दिखाई दे रहा है इस ब्रिज में हमें लटकती हुई एक सीढ़ी दिखाई दे रही है।

मंदिर मे हमें कुछ आ रेलिंग्स ऊपर की ओर लगी हुई दिखाई दे रही है।

रखा है उसकी मसल्स दिखाई दे रह है यहाँ पर चलती हुई लाइट की रोशनी आ रही है।

और कर्मचारी दिखाई दे रहे है काफी सारी मिट्टियाँ और एक जे_सी_बी दिखाई दे रही है।

बाइक और स्कूटी दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें लोहै बड़ा से का ड्रम दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक हमें गुफा टाइप का दिखाई दे रहा है जिसमे हम एक व्यक्ति अंदर जाता दिखाई दे रहा है और एक--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

यहाँ पर एक बना हुआ लोगो दिखाई दे रहा है और यह कुछ जलती हुई लाइटस --